यहां पर पेड़ भी है पर उसमें एक भी पत्ती दिखाई नहीं दे रही हैऔर पीछे काफी बड़े-बड़े पेड़ नजर आ रहे हैंआसमान भी खुला खुला हुआ नजर आ रहा है।

ये या यह एक मंदिर के बाहर का चित्र नजर आ रहा है यहाँ पर दो भगवानों की मूर्ति लगी हुई लगी हुई है एक लकड़ी का गेट भी दिया गया है।

यहाँ पर आकर अगर सुबह सुबह वाक करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा मन को कितनी शांति मिलेगी ऑक्सीजन भी अच्छी अपनी शरीर में पहुंचेगी और कार्बन-डाय बाहर जाएगी।